एक बड़ा सा शोरूम शोरूम क्या तेल तेल का --

आगे बहुत सारे पंडित दिखाई दे रहे है पैंट शर्ट पेहने है धोती कुरता पेहने हैं।

इसमे पानी की बॉटल दिखाई दे रही है गुटका पर ए गुटका की दिखाई दे रही है ।